खरीद कर ले जाकर अपने घर में सजाते हैं। यहाँ पे एक बाइक रूका हुआ है।

और पार्क का डिजाइनिंग भी बोहत ज्यादा अच्छा है

और एक घर भी दिखाई दे रहा --.